ये तो बिल्डिंग है ये बिल्डिंग बहुत अच्छी है यहा पे बहुत अच्छा बिल्डिंग इस का रंग बहुत अच्छे है यहाँ पर तो बहुत--